पानी भरा हुआ दिख रहा है जो व्हाइट कलर मे दिख रहा है काफी सारे बतक वगेरे दिख रहे है और आस पास मे काफी सारी बिल्डिंग ए दिख रही है।

व्हाइट की निचे मे दिख रही है जो टेबल रखा हुआ है और पिछे का बैकग्राउड जो है वो रेड कलर मे दिख रहा है और यहाँ पे एक मूर्ति रखी हुई है जो व्हाइट कलर मे दिख रही है।

खंभे के ऊपर कुछ तार वगैरा दिख रहे है और यहाँ पर जो पेड़ दिख रहे है पेड़ काफी ऊंचे ऊंचे दिख रहे है और काफी दूर दूर तक दिख रहे है यहाँ पे काफी जो है घांस भी दिख रही है और जो सामने एक रोड दिख रहा है।

खंभा दिख रहा है खंभा बिजली का दिख रहा है उसके उपर कुछ तार वगैरा दिख रही है और दीवार दिख रही है दीवार मे कुछ ईटे वगैरा लगी हुई दिख रही है सामने में यहाँ पर कुछ मिट्टी वगैरा दिख रही है।

और भी काफी सारे सामान रखे दिख रहे है कुछ चेयर वगैरह दिख रही है उसके उपर टॉवल रखा है रेड कलर में दिख रहा है और आसपास में कुछ बल्ब वगैरह जलते हुए दिख रहे है यहाँ पर काफी सारे खाँचे वगैरह बने हुए दिख रहे है काफी सारे प्रोडक्ट वगैरह रखे हुए दिख रहे है क्रीम

कुछ व्हाइट कलर के बादल दिख रहे है काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी दिख रहे है पहाड़ पे भी काफी सारी घास वगेरे दिख रही है जो ग्रीन कलर मे दिख रही है और यहां पर दूर दूर तक फैला हुआ दिख रहे है कुछ पेड़--